सनशाइन स्कूल सी_बी_एस_सी अंग्रेजी मे और हरे हरे पेड दिखाइ दे रहे है|

इस तस्वीर मे आसमान दिखाई दे रहा है हरे हरे आसपास पेड दिखाई दे रहे है एक बड़ा कार्यालय बना हुआ दिखाई दे रहा है और छोटे छोटे हरी हरी पत्तियों वाले पेड लगे हुए दिखाई दे रहे है और कुछ चार पहिये वाहन खड़े दि --

और चारों तरफ हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर मे रेल्वे प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है और रेल की पटरी दिखाई दे रही है।

और एक लड़का जाता हुआ दिखाई दे रहा है और आसमान दिखाई दे रहा है बिजली के तार दिखाई दे रहा--